यह एक मूर्ति है जो की गोल्ड से बनी हुई है और यहाँ पर एक अलमारी जैसी है जिसमें की गोल्ड की छोटी-छोटी सी मूर्तियाँ रखी हुई है और एक --

और यहाँ पर इसके सामने बहुत सारी जगह पड़ी हुई है छोटी-छोटी सी दुबा लगी हुई है।

समुद्र भी भरा हुआ है एकदम सूरज भी पड़ --

दो लोग यहा पर खड़े है कुछ जगा पड़ी है और यहा पर कुछ कचरा भी पड़ा हुआ--

यह एक दुकान है आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना सारा सामान रखा हुआ है| कांच के गेट लगे हुए हैं| एक इसके सामने एक बाइक भी रखी हुई है एक--